चित्र किसी नदी का है क्योंकि सामने बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी के आसपास कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं और सामने आसमान में कुछ बदल भी दिखाई दे देंगे।

यह चित्र किसी ऑफिस का है जो कि सामने एक ड्राई क्लीन सेंटर है जिसमें कुछ मेज पर कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ आदमी इधर उधर खड़े हुए दिखाई देते है।

यह चित्र किसी खेत का है जो कि सामने खेत में कुछ फसले दिखाई दे रही है और एक आदमी खड़ा हुआ उसे पत्ते तोड़ते हुए नजर आ रहा है और आसपास बहुत सारे फसले दिखाई दे रही है।